ये एक रूम का जैसे है जहां में दरवाजा पे वेलकम पी_सी_आई इंस्टीट्यूट लिख के है।

इसमें टेबल है टेबल के ऊपर में लैपटॉप दिखाई दे रहा है।

ये एक रास्ता है जहां में बाइक रखा हुआ है।

ये एक शॉप है जहां में लाइट से घेरा हुआ है।

और टेबल का अंदर में जो है कुछ बॉटल लोग रख के है जो सामान है।

ऐ और उसमें कुछ बनाया हुआ है घर।

कलर का सामने में एक ब बास्केट है जो कि ब्लू कलर का है।

उसका फ्लैग का घेरा हुआ है व्हाइट कलर से।

दो कप में एक कॉपी पेन रखा है और चेयर ब्राउन कलर का एक है।

मंदिर में रखा हुआ है जब स्टैचू है और उसके सामने में तीन स्विच बॉक्स है।

लेफ्ट तरफ में ब्लू कलर का पर्दा लगा के है।

पिक्चर का पीछे में दीवार में पिंक कलर कुछ डिजाइन चिपका के है।

इसमें एक लड़का जो है चेयर पर बैठके है।

और एक जो है चल रहा है जो की ब्लैक टी शर्ट पहन के है।

टेबल है उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट है जो--

व्हाइट कलर का कुछ बॉक्स लोग बना रहे है और एक जो ब्लू पेपर काट रहे है।

एक बिल्डिंग है जहां में तीन फ्लोर हैं और उसका आगे में दो बोर्ड लगाया हुआ है गोल्ड लोन लिख के।

जो ब्रिंजल और ब्लू साड़ी पहना है।

एक फ्रिज है उसका अंदर में बॉटल लोग।

फ्रिज का अंदर में और जो व्हाइट कलर का है फ्रिज के ऊपर में वोल्टास लिखा हुआ है।

ऊपर में जो है बैलून लगा के ब्लू व्हाइट ऑरेंज कलर का--

फर्श में दो तीन लाठी लगाके है उसका उपर मे दो--

ये एक शॉप है जहां में ब्लू रेड ग्रीन ब्लैक का रखा हुआ है।

ये एक बैंक है जहाँ में आगे मे एस_बी_आई चिपकाया हुआ है।

और यहां पे टीन बिल्डिंग है।

एक जो है ग्रीन और खाली खाली है और एक जो रूम जहां में दरवाजा भी है।

ये एक रूम है जहां में बीच में टेबल है उसका ऊपर टिशू पेपर जो ब्लैक का सब रखे हैं।

और साइड में जो टेबल है जो आ बेंच है और दीवार जो है पिंक कलर ब्लू कलर से लगाया हुआ है।

और वहां पे लिखा हुआ एट्टीन सेवेंटी और उसका ऊपर में कप लोग भी रखा हुआ है ग्लास भी रखा हुआ है।

एक बिल्डिंग का सामने में है जहां में बिल्डिंग में फूड ट्रक लिखा हुआ है।

उसका बाहर में आदमी लोग बहुत ज्यादा है जो बाइक भी है।

दरवाजा है उसमें गेट पेत आधा खुला हुआ है।

गाड़ी के सामने में भी एक इलेक्ट्रिक पोल्स और बिल्डिंग सब बनाया है।

उसमें बाहर ऊपर में लिखा है।

एक घर का अंदर में है जहां में रेड चेयर है ब्लैक चेयर है।

इसका उपर में आ बहुत ज्यादा मछली है जो काला काला है।

उसके नीचे में साइड में ब्लू कलर कुछ सामान दिखाई दे रहा--

और साइड मे जो आदमी एक है कोने मे--

और साइड में ब्रिज के साइड में जो कि है वॉल बनाकर है और साइड में--

नदी भी है नदी में एक लड़का जो खड़ा कर रहा है तीन बच्चा बैठ के नहा रहा है।